बहुत सारे लोग आए हैं झूला झूलने के लिए झूल रहे है ऊपर पे बैठ के।

पेंट वेंट दिख ही रहा है बतख में काफी सुंदर बतख है एक आदमी जा रहा है।

देखने से सुंदर लग रहा है।

पेंट बेंट किया हुआ है काफी अच्छा लग रहा है।